देख सकते हैं कि सामने कोकोनट का पेड़ लगाया हुआ है।

देख सकते है कि ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे भारतीय स्टेट बैंक लिखा है उसके नीचे दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं।

देख सकते हैं कि सामने क्रिकेट का माहौल है जिसमें सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।

पास में तीन विकेट लगाए हुए हैं आसपास एक टावर है आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

हम देख सकते हैं कि यह एक दुकान है जिसमें बहुत ही सारी बेसिंग की समान रखी गई है और बहुत सारा पेंट रखा गया है।

जिसमें सभी व्यक्ति और महिलाएं और बच्चे--

कार्टून में बहुत सारे डब्बे हैं आसपास बहुत ही सारी लाइट लगाई गई है।

सामने दो घर बनाया गया है जो कि पूरे कांच के नजर आ रहे हैं पास में रेलिंग और सीढ़ी लगाया गया।

देख सकते हैं कि सामने एक पेट्रोल पंप है जिसमें लिखा हुआ है यदुवंशी किसान सेवा केंद्र।

जिसके नीचे एक कुर्सी रखा गया है इस घर का गेट खुला हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

एक अलमारी रखी गई है पास में एक ग्लोब है।

बहोत सारे सोने वाले सामान रखे गए हैं जैसे कि गद्दा पिलो ।

सामने दो तीन गाड़ियां पार हो रही है जिसमें एक बाइक और एक कचरा वाला--

एक खटिया पे दो व्यक्ति बैठे हुए है जिसके बगल मे एक औटा पे एक और व्यक्ति बैठा हुआ है।

एंड में एक बोर्ड रखा बोर्ड बोट है।

जिसका बाल बंधा हुआ है उसके बगल में बहुत सारी चीज रखी गई है जैसे की कपड़ा धोने वाला--

पास मे रेड कलर का एक डेंजर खतरा का बैन लगा हुआ है।

पास मे सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो की वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यह एक पलंग का दुकान है जिसमें दिवान पलंग सामने दिख रहा है जिसमें गद्दी नहीं लगाया हुआ है बगल में सोफा रखा हुआ है।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

इसके पीछे हल जोतने वाला लगाया गया है जिसका टर्क ब्लैक कलर का है ऊपर में एक बड़ी सी पेड़ नजर आ रही है।

बगल में कुछ छोटे छोटे ईंटे फेंके हुए हैं।

उसके बगल मे एक और है जोकि रेड कलर का है पास मे जोकि गोल के गोला होके झूलने वाला स्लाइड है।

आस पास बहुत सारे लाइटे लगाए गए हैं व्हाइट कलर की जिससे रोशनी आ रही है।

आस पास एक केले का पेड़ है बगल में बहुत सारी लकड़ी काट के रखी हुई है।

यह घर का दृश्य है जिसका ब्लू कलर का गेट है और दिवाली येलो कलर का है पास में एक पोल है जिसपे एक बोड टांगा हुआ है।

मेग्या स्टील का बगल में रोड है उसके आस पास नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

हम देख सकते हैं कि सामने शादी हो रहा है जहां पे ब्लू कलर का टेंट लगाया हुआ है आसपास बहुत सारे बैलून लगाए हुए हैं जोकि बैलून का कलर रेड येलो ग्रीन ब्लू है।